चेन्स दिखाई दे रहा है कुछ चल रहा है कुछ खड़े हुए हैं।

एक पहाड़ी दिखाई दे रही है पहाड़ी के ऊपर से पानी कूद रहा है नदी दिखाई दे रहे है जिस नदी में पानी भरा हुआ है।

क्रीम आ स्लेटी कलर पुता हुआ है खिड़कियां दिखाई दे रहीं टीन सेड दिखाई दे रही हैं।

फिसल पट्टी दिखाई दे रही है मच्छ वाली सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं बादल दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर के।

ग्रीन कलर के पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं पीले कलर की लाइटें जल रही है।

कुछ लाइटें लगी हुई हैं हिटर लगा हुआ है कुर्सी रखी हुई हैं रेड कलर की अलमारी दिखाई दे रही जेंट्स खड़े हुए हैं तीन कुछ ब्रांच है।

भारती नाम का एक टेंट लगा टेंट लगा हुआ है बैनर लगा हुआ है जिसमें एकेडमी है कुछ बच्चे गर्ल्स --

एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के आसपास ग्रीन कलर के पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है एक दोकान दिखाई दे रहे है दोकान पे बैनर --